विंडोज दिख रही है।

ज्यादा भीड़ है यहां पर एक--

हमें नजर आ रहा है।

यहां पर बोहोत सारे है।

सुंदर सा गार्डन है और यहां पर--

हमे नजर आ रहा है यहां पर गाड़ी--